यह देखिये रूम में कितने लैपटॉप रखे खुये हैं जो अभी चालू नहीं हैं और टेबल भी रखी हुई हैं कई सारी है।

यह देखिये एक आदमी का कंकाल आया है और यहाँ पर आदमी की कंकाल की जान छान-बीन हो रही है। ।